पथर का भी डिजाइन किया गया है बीच मैं गोल सर्कल मैं पानी भरा हुआ है आप देखिए भोले नाथ की जो मूर्ति है वो कितनी सुन्दर है।